बहुत बड़ बिल्डिंग बिया बहुत बढ़िया बिया ओपर पोस्टर लगावल बा होमे फूल रखत बा ओमे आ ऊपर से करिया खानी बाटे लाइट जरतावे लाल बा बढ़िया लागता सुन्दर लागता।